एक वहां पे मैनेजर है जो कि सब को बता रहा है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कई सारे लोग हैं।

और इस दीवाल का कलर व्हाइट है और कई सारे चैंबर बने हुए हैं वहां पर।

एक आदमी का हाथ में एक हेलमेट है।

वो सभी एग्जाम दे रहे हैं पीछे एक पीला कलर का भी पहना हुआ है शर्ट बच्चा बैठा हुआ है।

वहां पर कई सारे गाड़ियां भी रखा हुआ है।

ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे भी रखे हुए हैं।

और नीचे जाने के लिए ढलाई भी किया गया है वहां पर।

इसमें ग्रीन कलर का कारपेट भी बिछाया गया है।

और उसके ऊपर तीन डिजाइनर लाइट भी लगे हुए हैं।

यह किसी विद्यालय का तस्वीर है।

यह दीवाल का कलर रेड और वाइट है।

यह एक दुकान है मॉल का तस्वीर है।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

यह किसी फंक्शन का तस्वीर है जहां पर एक आदमी ब्लू कलर का कुर्ता पहनकर फोटो खिंचवा रहा है।

वहां पे एक बड़ा सा पंखा भी लगा हुआ हैं।

जहां पर एक ब्लैक कलर का कार खड़ी है।

उसके जमीन में टाइल्स लगाया गया है।

दीवाल का कलर ब्लू है।

और बहुत सारे यहां पर कांच के समान बने हुए हैं।